सॉफ्ट टॉयज रखे हुए हैं दुकान के बाहर झाड़ूये टंगे हुए हैं जस्टबिन टंगा है।

कुछ लोग खड़े हुए हैं रेलवे स्टेशन पर अ जामताड़ा लिखा हुआ है।

इमेज में स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल में कुछ टॉयज लगे हुए हैं।

आर रैकेट रखे हुए हैं व्हाइट कलर के बॉल्स रखी हुई हैं।

अ एक ब्लू कलर का टब रखा हुआ है एक कोठी रखी हुई है।

वेदांता बुक वर्ल्ड लिखा हुआ है कलश बना हुआ है।

अ डिश पर गार्निशिंग की हुई है स्पून रखी हुई है।